भईया है जोकि कटिंग की दुकान--

इमेज में देख पा रहे हैं कि --

जंगल साइड के इलाके की है यहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं।

जैसा की आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि--

कि इस इमेज में एक भइया --

जैसा कि आप सभी लोग इस--

जो कि कसरत करने के काम आती हैं।

जहां पर कई सारी दुकानें और कई सारे लोग मौजूद हैं।

जैसा कि आप सभी लोग--

कि एक रास्ता है यहां पर--

जिसके बाहर कई सारी गाड़ियों की भीड़ भी लगी हुई है।

दयाल बूट हाउस भी लिखा गया है।

अगर आप लोगों को भी मंदिर जाना पसंद है तो प्लीज यहां पर जरूर जाइए।